इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह एक तीन मंजिला मकान है।

ऊपर एशिया फिटनेस नाम की एक जिम है उसका पूरा कवर शीशा का है और अच्छा लग रहा है देखने मे बाहर से।

और बाहर एक पोस्ट बॉक्स रखा है।

जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के उसका भाषण सुन रहे हैं जिसमें--

बीच में भी रखे गए जिसका स्वाद ले सके।

और दिस को देख के दिल को सुकून मिल रहा है।

की यहाँ पे एक कोट पैंट पहन के आदमी खड़ा है।

और बगल में एक स्टैचू है लड़की की बहुत अच्छी है और पीछे पंडाल बहुत अच्छा है।

यह एक बरा मार्केट का समा मार्केट है।

और बहुत सारे बैठने के इंतजाम भी है।

और बहुत बड़े-बड़े और से लेकर छोटे-छोटे--

कोचिंग स्टाफ मिल कर बच्चों को बढ़ावा दे रहे है।

और दो तीन आदमी काम कर रहे है और एक बड़ा सा ड्रम रखा गया है जिसमे पानी भरा है।

और इसे व्हाइट कलर से पेन्ट किया गया है।

इस चित में देखने से लग रहा है यह किसी--

सब बहुत सारे आदमी और बच्चे औरत और--

इस चित्र को देखने से लग रहा है--

और बहुत सारे खेल रहे है।

जिसको कैद कर के रखा गया है।

इस चित्र को देखने से लग रहा है यह किसी बहुत बड़े से मॉल का चित्र है।

और बीच में एक एस_बी_आई कार्ड का बैंक ऑफिस भी है ऊपर बहुत ज्यादा लाइट लगा है।

और यहाँ पे लाल कलर के पोस्टर है और बाहर दो आदमी खड़े है।

तीन मंजिला इमारत है जिसमें हॉट कृष्ण नाम की एक दुकान है और एक पटना--

यह सील को देखने से लग रहा है यह एक पुराना सा घर है बहुत बड़ा सा जिसमें--